ये देखिये-अ ये किसी कोचिंग सेंटर का पिक है जिसमे आपको देख सकते है डेस्क वगैरा पड़ी हुई है।

ये किसी रेल्वे स्टेशन का सीन है जहां पर लाइन दिख रही है और रेल्वे ट्रैक दिख रहा है पूरा--

ये देखिये आप को एक फेन नज़र आ रहा होगा ये फेन के आकार में ये फेन ही है और ये बड़े बड़े गोदाम में लगता है।

एक मंदिर का सीन है और मंदिर को बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया गया है क्योंकि झालरों के द्वारा लाइटिंग के द्वारा और ऊपर हाई लोजन लगी हुई है।

ये किसी घर के बाहार लगभग चार से पाँच गड़ियाॅं खड़ी हुई है जिसमें से ये न्यू गाड़िस है।

की यहाँ पर आपको सभी प्रकार की मालाएं गेंदा का फूल गुलाब के फूल आप को जो भी फूल चाहिए यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा माला मिल जाएगी हर प्रकार की आप बनवा सकते है।

गोल चक्कर झूला और काफी सारी पब्लिक है।

हैलो आप को रोड नज़र आ रहा होगा और ये गाड़ी का मालिक पता नहीं कहां गया।

ये देखिए भाईसाब कितना प्यारा लग रहा है ये मोर आप देख सकते है मतलब बहुत कम ऐसे पिक्स होते है जो आपको मोर नाचता हुआ नजर आयेगा।

आप देख सकते है यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है जो की दस से पंद्रह लोग बैठे हुए हैं और पीछे एक बैनर लगा हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर जी का।